इस इमेज मे मुझे इ-रिक्शा दिखाई दे रही है या इ-रिक्शा रेड कलर की है इ-रिक्शा के साइड मे मुझे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।